सफ़ेद कलर से पेंट हुए हैं।

चेयर के ऊपर एक आदमी बैठे दिखाई दे रहे है जिन्होंने सफ़ेद कलर की शर्ट पेहनी है और बहुत सारे --

और लाल रंग की है। बोहत सारे आदमी अपना सामान --

यहाँ पर मुझे धागे का कुछ काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

पेंट की गई है और इसका दरवाजा मुझे --

यहाँ पर मुझे एक वाइट कलर --